इस फोटो में एक शेर की फोटो दिखाई जा रही है।

लड़के ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

पार्क में सीढ़ी दिखाई दे रही है जो कि रेड कलर की दिखाई दे रही है।

ज्ह कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

यह फोटो छत के ऊपरी भाग की दिखाई दे रही है।

इसमें बच्चे रेस करते हुए दिखाई दे रहे --

कुछ गाड़ी दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग काफी नजर आ रही है। साइड में एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

नीचे की तरफ सटर दिखाई दे रही है।

जो की सामन खरीदते हुए दिखाई दे रहे।

घर का कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

बिजली के खम्बे भी इसमें दिखाई दे रहे हैं।

जो की चद्दर सेट का बना हुआ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर पेड़ दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ एक बाइक दिखाई दे रही है जिसके ऊपर हेलमेट रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ बच्चे नीचे बैठे हुए कुछ बच्चे भाग रहे एक दुसरे को पकड़ते हुए नजर आ रहें।

आसपाच बहोत सारे चिप्स के पैकेट टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो एक लाइब्रेरी की दिखाई दे रही हैं जिसमें कबर्ड बने हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें बहोत सारी बूकें दिखाई दे रही --

बाहर दिवार पर्ल रेड कलर का पोस्टर लगा हुआ है। साइड में एक शटर दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की दिखाई --

नीचे की तरफ एक बैग दिखाई दे रहा है जिसका कलर येलो कलर का दिखाई दे रहा है। आसपास और भी दुकानें दिखाई दे रहीं हैं। साइड में एक चद्दर सेट दिखाई दे रहा है।

दुसरी साइड एक बड़ी चेयर दिखाई दे रही है। शटर दिखाई दे रही है। शटर का कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है।